इस दृश्य में दिखाई गई तस्वीर किसी बड़े से किताब दुकान की हैं ऐसे बड़े बड़े दुकानों में आपको सभी प्रकार की सभी तरह के किताबे आसानी से मिल जाया करते हैं।

इस दृश्य मे दिखाई गई तस्वीर काफी शॉप की हैं जिस का नाम डी _एस_पी सोडा काफी शॉप हैं।

इस दृश्य मे दिखाई गई तस्वीर किसी सरकारी विद्यालय मे पोशाक वितरन की हैं ।

इस दरूस मे दिकाई जाने वाले तस्वीर सड़क पर कुछ लोग नृत्य करते हुए नजर आ रहे हे या निर्ध कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं ।

इस दृश मे दिखाई गई तस्वीर किसी मंदिर के बाहरी फील्ड की हैं।